शायद घर है किसी का और जो कि यहां पर दो घर बिल्डिंग नजर आ रहा है और यह बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। यह व्हाइट कलर का यहाँ पे एक कूलर रखा हुआ है और यहां पे एक पानी टंकी बना हुआ है जो कि ये टंकी बहुत ही बड़ा है और टंकी के ऊपर एक तार लगा हुआ है और तार --

बस स्टॉप लग रहा है देखने में और जो कि इधर एक ठेले ब रास्ते बनेगा उसपर बहुत सारे बोतलें रखे हुई है।

और वहाँ पे जो न थोड़ा जो न सड़क खराब है तो वहाँ पे पानी जमी हुई है और ये बहुत बड़ा बस स्टैंड लग रहा है।

यह एक कोचिंग क्लासेज है जो की यहाँ पे श्रृजन मैथमेटिक्स क्लासेस है जो की यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे है और वहां पे खिड़की में एक पर्दे भी लगे हुए --

कोई जो ना लस्सी ही का शॉप है जो कि यहाँ पे शाक हब लिखा हुआ है एण्ड मोर मैड विथ यानी की शक्कर जूस यानी की जूस की दुकाने है।

ये भी एक डॉक्टर ही है जो न हॉस्पिटल है जो कि स्मिता नर्सिंग होम है लेकिन यहां पे शायद सिर्फ लेडीज को देखा जाता है और ये व्हाइट कलर की क्लिनिक बनी हुई है।

यहां कोई हॉस्पिटल वगैरा टक्कर लग रहा है होटल तक का लग रहा है बोहोत ही बड़ा बिल्डिंग लग रहा है। और इधर ये जो नई --